फोटो जो है ए फ़ोटो मे एक झरना दिख रहा है और झरने के नीचे बहोत सारा लोग खड़े हुए जो झरने में नहा रहा हैं नीचे झरने का पानी बह रहा है। ये कोई पहाड़ टाइप का कुछ लग रहा है।

फोटो में हमें एक मॉल दिख रहा है जिसका नाम है भी मार्ट और ये मॉल के सामने बहोत सारे लोग खड़े हे । दो बाइक भी खड़ा है।

ये जो है सफ़ेद कलर का है शोकेस जो है लॉक किया गया है बाहर से |

फोटो में हमे एक वाटर पार्क दिख रहा है वाटर पार्क बहुत खूबसूरत से सजाया गया है और सामने हमे कुछ --

खेलने वाला कुछ दिख रहा है वॉटरपार्क में और ये एक पूल का फोटो है और दूर बोहोत सारे पूल का फोटो दिख रहा है।

और कोई लोग नई दिख रहा स्टीमर में सायद अंदर है और बाकि पूरा समुंदर दिख रहा है और --

फोटो में एक सड़क दिख रहा है और सड़क के बगल में बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ टाइप का कुछ है और बाये तरफ खाड़ी है और बहुत सारा पेड़ पौधे छोटा छोटा झाड है ए र र र एक कुत्ता भी जा रहा है।

सामने भी एक रैक है जहाँ पर भी बोहोत सारी किताबे हैं। ऊपर लाइट है| ए ये सेन्ट्रल ए सी वाला ये अ दुकान है।

फोटो में हमें एक मंदिर दिख रहा है। मंदिर में कोई लोग नहीं है और ये एक शायद कोई बुद्ध मंदिर है और सामने हमें प्रदीप दिख रहा है और हमने पूजा करने की सामान भी रखा हुआ है।

फोटो में एक वाटरपार्क दिख रहा है और वो जो है वाटरपार्क के ऊपर से राइड राइडिंग भी दिख रहा है और नीचे --

फोटू में एक सादी का पेंडील दिख रहा है। ये फोटो जो है पैडिल के अंदर से खींचा गया है। सामने जो दूल्हा-दुल्हन का बैठने की जगह है वो दिख रहा है। वो स्टेज --

एक मिठाई का दुकान का सामने से खींचा गया हुआ फोटो है जहां पर सिर्फ जो मिठाई रखने का जगह है और उसके अंदर मिठाई भी दिख रहा है।

नदी के कोई आदमी नहीं दिख रहा है। नदी में एक पक्षी दि - दिख रहा है। साइड में कुछ सुन्दर - सुन्दर फूल दिख रहा है।